यह एक सेलून की दुकान है जिसमे दो बड़े बड़े सीसे लगे हुए है।

यहा पे दो पुरुष और एक मोटी सी बुजुर्ग महिलाए रस्सी को पकड़े हुए खड़ी है।

यह एक गार्डन का फोटो है।

यहाँ पे दो बुजुर्ग जिसमे से एक बुजुर्ग माइक लेके गाना गा रहे है।

यहाँ एक घर का निर्माण हो रहा है जिसमें से छे मिस्त्री छत की ढलाई कर रहे हैं।

जिसमे एक स्टेट बैंक ए.टी.एम के बहार लम्बी पुरुषों की लाइन लगी हुई है।

रोड के किनारे पाँच से छे रिक्शा लिए हुए आदमी दिखाई दे रहे है।